जो की कुछ बच्चे भी वहां दिखाई दे रहे हैं कुछ औरतें भी दिखाई दे रही है उनमें से सबसे ज्यादा लाल कलर के कपड़े पहने हुए लोग भी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर हमें बोहोत सारी टेबलें ए रखी हुई दिखाई दे रही है कुर्सियाँ भी रखी हुई है यहाँ पर खाने- पीने वाला एक रेस्टोरेंट बना है जो की यहाँ पर कुछ ग्राहक वहाँ पर खाना खाते हुए दिखाई दे रहे है।

और एक वेटर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पर टेबलो पर अम्म कुछ प्लेट भी रखे दिखाई दे रहे है दिखाई दे रहे है।

इसी लिए पूरी तरह से बल्ब चमकते दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर काला-काला अंधेरा लगा हुआ है इसलिए बल्ब कि रोशनी भी बहुत ज्यादा चमकती हुई दिखाई दे रही है वहाँ पर कुछ व्यक्ति भी खड़े हुए हैं।